पीछे में पर्दा भी लगा हुआ है पीछे में कुछ बेड पर बेडशीट भी बिछा हुआ है पीछे में गेट भी है।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

सामने में दो बाइक पे डोमिनोज का बॉक्स भी बांधा हुआ है।

पीछे में बहुत सारा टेबल और कुर्सी लगा हुआ है पीछे में कुर्सी पर कुछ आदमी भी बैठा हुआ है।

यह एक बस स्टैंड का चित्र है सामने में बहुत सारा बस लगा हुआ है।

लड़का ने एक बैग भी टंगा हुआ है सामने में और भी कुछ लोग खड़े हैं।

सामने में एक व्हाइट रंग की कार खड़ी है पीछे में कुछ और भी गाड़ी है।

गोदरेज में शीशा भी लगा हुआ है पीछे में एक पंखा है पंखा का रंग सफेद है ।

आमने में कुछ टेबल और कुर्सी लगा हुआ है पीछे में एक आदमी बैठा हुआ है।

सभी गाडी में ब्लैक रंग का टायर भी लगा हुआ है सभी गाडी में शीशा भी लगा हुआ है।

ढोल का साइज बहुत बड़ा है सामने में बहुत सारे पुरुष ने अपने माथे पे बड़ा-बड़ा सिंघ लगाया हुआ है।

सामने में दो स्लाइडर भी लगा हुआ है पीछे में भी एक स्लाइडर लगा हुआ है।

सामने में बहुत सारा टेबल और कुर्सी लगा हुआ है।

सामने में बड़ा सा पहाड़ भी है।

यह एक होटल का चित्र है सामने में टेबल और कुर्सी लगा हुआ है।

सामने में एक होटल सागर का चित्र है सामने में गेट पे ताला भी लगा हुआ है ।

सभी बच्चों ने ब्लैक रंग का जूता पहना हुआ है सामने में कुछ लोग भी हैं।

कुर्सी का रंग ब्लैक है पीछे में दो औरत भी है पीछे में कुछ आदमी भी है।

सामने में बहुत सारा बाइक खड़ा है सामने में बहुत सारे लोग भी हैं।

यह एक ग्राउंड का चित्र है ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।

सामने में एक खंभा भी है पीछे में स्टंप भी गड़ा हुआ है ।

पीछे में एक ट्रेक्टर का डेला भी है पीछे में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी है।

सामने में टेबल पर एक मिनी इन्विटर भी रखा हुआ है।